इस ये वौटरफ़ौल बहुत खूबसूरत लग रहा है ये वौटरफ़ौलस जो --

जैसा कि मैं देख रही हूं अ शाम के वक्त है जब सूरज अस्त होता है और --

एक सामने जो वो थ्री क्वाटर और टी-शर्ट पहने हुए हैं जो वो जिम करते हुए आ रहे हैं एक हाथ में बॉटल लिया हुआ है टावल लिया हुआ है।

जैसा की मैं देख रही हूं सुबह का वक्त है सफेद कलर की बिल्डिंग खड़ी हुई है।

और उसके पास में लमपोस है और यहाँ व्हाइट कलर में बहुत सारे टाइल्स और मार्वल पत्थर रखे हुए हैं।

जैसा की मैं देख रही हूँ ये घर शादी वाले घर या कोई पार्टी वाले घर लग रहे हैं क्यों की ये घर पूरे ही डेकोरेटेड हैं अ --

जैसा की मैं देख रही हूँ ये ये सब क्रिश्चियन हैं और सभी क्रिश्चियनस अ पुरुष और महिलाएं --

देख के लग रहा है कि यह लोग फॉरेस्ट टूर करने आए हैं क्योंकि इन लोगों के पीछे बहुत बड़ा बड़ा लगेज भी है रेड कलर का --

फैन लाइट्स एंड स्वि‍च का शॉप है जैसे की यहाँ पे सब दिख रहा है सब डब्बे में सब पैकिंग किया हुआ है हर एक नया-नया पंखा --

किताब रखे हुए हैं वो सेल्फ में एक एक पेपर लगा हुआ है और उसमें कुछ लिखे हुए हैं और --

जैसे की मैं यहां देख रही हूं यहां कोई पार्टी ऑर्गनाइज हुई है क्यूंकि--

अ बोट्स हैं जो पानी में तैर रहे हैं और उसमें सब व्यक्ति बैठे हुए हैं।

ऐना ऑरेंज यलो में है एक ऐना ब्लैक में है और --

इस मिरर से एक ट्यूबलाइट एक बल्ब दिख रहा है बाहर की तरफ बीचों--

सीमेंट हुआ है उसमें और नीचे की तरफ जो दुकान है वो ट्रेंड्स लिखा हुआ है वहाँ पर --

सारे स्टूडेंट्स वहा खड़े हैं ये टीचर्स जो जा रहे हैं उसके पास--

लीव्स हैं उसमें परपेल फ्लावर हैं छोटे छोटे पॉटस में प्लांट्स भी लगे हुए हैं और पेड़ की डालियाँ भी नजर आ रही हैं।

एलमुनियम में लिखा हुआ है रेड कलर पे लिखा हुआ है अग्रवाल टायर हाउस ये एक टायर हाउस है --

उसमें खाने की बहुत सारी इमजेस फोटो लगी हुई है औ--

पीछे की तरफ जंगल छोटा पहाड़ नजर आ रही है ये पूरा गंगा है।

और ये पानी की लेहेर बहुत ही खूबसूरत लग रही है और पूरा ये नदी घेरा हुआ हैं।

बहुत ऊँचा-ऊँचा पहाड़ है और इस पहाड़ में हरे-हरे जंगल है घास है पेड़ है।